वे इस रेस्टोरेंट का आनंद ले रहे--

इस तस्वीर में आप को लाइन दिखाई दे रहीं हैं।

कि यह बड़ी उमर की--

आंटी तस्वीर में रोती हुई दिखाई दे रही हैं।

टाइल दिखाई दे रही है।

कारीगर अच्छी सी कार्य कर रही हैं।

स्टेशनरी के लिए हमारी दुकान--

हर सामान मिलता है।

यहां पर फोटो में आपको शेड लगे हुए दिख रही हैं और धूप से बचने के लिए ये शेड लगाए गए हैं।

यहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ चेयर्स पड़ी हैं एक पानी की बोतल पड़ी है और--

फ्रेंड्स आ सकते हैं यहां पर--

कोक स्नैक्स वे ड्रिंक्स मिलती है।

में उपलब्ध है यहां आप खेल--

दिखाई दे रही है।

साइकिल की सब सीट --

कोई भी चार्ज नहीं है।

यहां पर आपका बुखार चेक फ्री किया जाता है।